यहाँ पे देखिए कोई जिम अ--

ये देखिए यहां पर जो है बहोत सारी महिलाएं और बहोत सारी जो गर्ल्स है वो अ एक्सरसाइज या योगा--

यहां पर भी देखिए इसमें किसी की मैरिज हो रही है जिसमें एक लेडिस ने ब्यूटीफुल साड़ी पहनी हुई है और डोला भी बना हुआ है और--

अ सभी तरह के पिज्जा मिलते हैं और जैसे--

डिफरेंट टाइप के पिज़्ज़ा और बर्गर मिलते है।

ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो है काइट्स लगी हुई हैं।

इनके यह हां जो है हां हां।

यह तरीके से सजा हुआ है और एल_ई_डी लाइट्स भी लगी हुई हैं काफी सारे यहाँ पर बैटरी पर भी --

यहाँ पर देखिए तीन बच्चे जो हैं तीन बॉयज जो हैं वो वो अ रेस लगा रहे हैं।

यहाँ पे लेडीज़ गारमेंट की शॉप नज़र आ रही है जिसमें डमी पर भी लेडीज़ सूट लगा हुआ है काफी सारी--

देखिए ये क्लास की फोटो है जिसमें सभी बच्चे जो है अपने-अपने ड्राइंग बना रहे है और --

आ का कई मशीनें पड़ी हुई हैं फिलहाल यहाँ पर ऐसे जिम करने कोई आया नहीं हुआ।

यहाँ पर देखिए काफी सारे ग्लास लगे हुए हैं और--

गिलास भी हैं एक दूसरे के ऊपर रखे गये हैं और सभी गिलास जो हैं वो--

अ टी शर्ट और जेंट्स टी शर्ट का शोरूम है जहाँ पर काफी अ कलर्ड --

यह देखिए जेंट्स टी_शर्ट और शर्ट का शोरूम है और पूमा भी इसके ऊपर लिखा हुआ है तो ब्रांडेड जो है यहाँं पर शर्ट और टी_शर्ट देखने के लिए मिल रही है।

यह भी देखिए फास्ट फूड की शॉप है यानी कि यहाँ पर कॉफी बर्गर और सैंडविचेस और--

हमें यहां पर जो है इसी टाइप में मतलब जंक फूड टाइप चीजे मिलती है जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया--

दो तीन जो हैं जेंट्स भी खड़े हुए हैं।

और इसमें जो है स्लिपर मतलब के टू टू ऐसी स्लिपीर कोच है इसमें--

और इन्होंने इसमें की डेकोरेशन में रेड कलर ग्रीन कलर --

यहाँ वॉच भी रखी हुई है और एक हॉर्स की पेंटिंग भी रखी हुई है तो यानी की जो है गिफ्ट शॉप टाइप नज़र आ रही है।

यह भी देखिए आ जेंट्स सैलून है जिसका नाम है मैक यूनिसैक्स सैलून यूनिसैक्स का मतलब यहां पर जेंट्स और लेडीज दोनों ही आ सकते हैं।

अ बड़े बड़े जो है पेंटिंग्स भी रखे हुए हैं।

ये देखिए मिथिला बुक सेंटर के नाम से बुक डिपो है यहाँ पर काफी सारी जो है यहाँ पर बुक्स देखने के लिए मिल रही हैं और बच्चों की स्टेशनरी --

अ जैसे कि पेन पेंसिल इनके पैकेट्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं।

ये देखिए इंडियन आयल पेट्रोल पंप की फोटो है जहाँ पर--

काफी अच्छे कुलर देखने के लिए मिल रहे हैं और सारे कूलर जो है वो मुझे कंपनी के ही नजर आ रहे अ--

यह देखिए किसी गार्डन की पिक है जहां पर सारे बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी जो है अपना अपना वर्क कर रहे हैं।

अ और यहाँ पर बिस्किट नमकीन की शॉप है और ऊपर जो है शैम्पू के पाउचेस और कोलगेट के पाउचेस वगैरह भी लगे हुए।

यहाँ पर देखिए एक एच_डी_एफ_सी बैंक बना हुआ है और यहाँ पर जो है इसके बार बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं और--

जैसा कि आप देख सकते है कोई गंगा जी बनी हुई ऊपर पुल भी बना हुआ है और बहोत सारे--

और टेबल भी हैं और कर्टेन्स भी लगाए हुए काफी सुंदर रूम --

अ पड़े हुए हैं और छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं।

और चिप्स के पैकेट देखने के लिए मिल रहे है।

यहां पे देखिए कितना प्यारा डी_जे क्लब बना हुआ है अह यहां पर जो है कोई पार्टी जो है ऑर्गेनाइज हो रही है।